और यहां पर काफ़ी लोग चाय पीने आते हैं और यह आदमी चाय पी रहा है और एक आदमी दो आदमी बैठे --

यह कोई बुक स्टॉल लग रहा है और इस बुक स्टॉल में अनेक प्रकार की किताबें रखी हैं।

पहले इस बैंक का नाम सिंडीकेट बैंक था और यह बैंक बहोत ही अच्छा है। यह बैंक भी गोपालगंज शाखा का है।

और इसके चारो ओर घर ही घर हैं और इस आदमी ने गुलाबी कलर की सट पहन रखी है और काले कलर की पेंट --

और यहां पे बहोत ही बड़े-बड़े बड़ी-बड़ी मछलियां हैं और यहां पर केकड़े भी बिक रहे हैं और एक आदमी और एक औरत --

यह फोटो किसी आदमी ने खींचा है जो कि बहोत ही अच्छा लग रहा है।

ये बस काफी पुरानी लगती है और इस बस का कलर नीला और सफेद है।

पिक्चर में पाँच लोग हैं और यहां पर कई सारे पत्थर पड़े हैं और हरे कलर का पेड़ भी हैं।

और ये लड़की ने लाल कलर का कपड़ा और पीले कलर का सूट पहन रखा है और ये नृत्य कर रही है।

यह आदमी नाव के ऊपर खड़ा है और यहाँ पर तीन नाव हैं।

और यहाँ पर एक आदमी भी खड़ा हैं और उसने एक चस्मा पहन रखा हैं और उसने एक हरे कलर की चड़ भी पहन रखी हैं।